यह एक किराना दुकान है किराना दुकान में एक तराजू है बहुत सारे--

यह एक मछली बजार का फोंटो है यहां पे दो लेडिस है एक मरद है जो मरद है ग्रीन कलर का शर्ट पेहने हुए है चश्मा पेहना हुआ है।

बल्ब जल रहा है और पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए लड़का बहुत ही ज्यादा बहुत ही सुंदर लग रही है क्योंकि ये वाइट कलर का कपड़ा पहने हुआ है जिससे--